जहां पर उसमें म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है काफी लोग खड़े हुए हैं कई ट्रैक्टर लाइन से खड़े हुए हैं।

ये एक डैम की पिक्चर दिखाई दे रही है जहां पर लोग आते जाते टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ पानी भरा हुआ है।

ये एक गाड़ी गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पे कई वर्कर्स काम कर रहे --

जगह जगह गाड़ियां खड़ी हुई है कोई गाड़ी पे कलर कर रहा है कोई ग गाड़ी का चक्का खोल रहा है कोई गाड़ी साफ करता दिखाई दे रहा है।

साइड से नदी बहती हुई दिखाई दे रही जिसमें एक नाव चलती हुई दिखाई दे रही है।

और दो पेट्रोल पंप पे भरने वाले खड़े हुए हैं एक साफ दिखाई दे रहे--

इस पिक्चर में मुझे एक सड़क का सीन दिखाई दे रहा है जहां पे जानवर चले जा रहे हैं।

इस पिक्चर में एक नदी का सीन दिखाई दे रहा है जहां पे--

जहां पे पीले कलर के फूल गुलाबी कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं और रैक बने हुए हैं जिसमें तरह-तरह के फूल रखे हुए हैं।

कई लेने के लिए आई हुई। कई बच्चे खाते हुए नजर आ रहे हैं। कई बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं।

बिस्किट्स दिखाई दे रहे हैं फेंटा की बॉटल दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में एक स्कूल दिखाई दे रहा है कि उस उस स्कूल का--

ब्लैक कलर के कार के टायर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं।

जहां पे कई लोग अलग अलग प्रकार की मछली लेकर बैठे हुए हैं कुछ छोटी मछली रखे हैं।

पूरा गेट बैलून से सजा हुआ है अंदर एक बहुत बड़ा केक दिखाई दे रहा है।

एक दूध दुहने वाला वाला साइड में खड़ा हुआ है एक गाय को नहलाता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग चिप्स खाते हुए भी नजर आ रहे हैं कुछ घूमते नजर आ रहे हैं।